यह एक हॉल है। इसमें लड़ लड़का लड़किया है।

और पेमेंट इस्कैन भी लगा हुआ है और पेपर भी रखा हुआ है ।

एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ एक महिला खड़ी हुई है और ये पे संतराये कलर की--

समान भी डला हुआ है और--

दो मंदिर से दिखाई दे रहे है।

य यहाँ कुछ फूल दिखाई दे रहे है जिसमें हरे--

बाल्टी वगैरा रखी हुईं हैं इसमें एक बोर्ड है लाइट दिख रही है।

यह एक इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय--